कि मूर्ति है ओने दुकान है औरते सब खरीद कर सामान जा सामने सीढ़ी है गमला--

कुछ बहुत सारा लोग बैठे हुए हैं।

बुद्ध भगवान का मूर्ति दिख रहा है बुद्ध भगवान दोनों गोड़ करके बैठे हुए है दोनों हाथ है।

रखें हुए हैं सामने एक पोस्टर भी टंगा हुआ है।

हॉल है ग्रिल है सीढ़ी है उधर एक आदमी दो तीन कार्टून रखा हुआ पानी का बोतल है झाड़ू पोछा है घ पंखा है।

तीन वाला फिर तीन वाला कुर्सी है उस पे एक बिटकेस रखा हुआ है।

है तीन चार आदमी सब आपस में बातें कर रहे हैं कुछ मोबाइल देख बड़ा बड़ा लाइट लगा हुआ है पंखा चल रहा है सामने कोली है।

यह एक जींस है बहुत सारा मछली है बड़ा बड़ा भी छोटा भी है।

पुस्तक का दुकान है किताब कॉपी भरा हुआ।

शादी का मंडप लग रहा है देखने में फूल से सजाया हुआ है सामने रेड कारपेट बिछा हुआ है व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है लोहा का गेट है।

बैठा हुआ बांस के पटरी रखल है।

नीचे बहुत सारा लोग है बहुत सा मोटर साइकिल साइकिल है।

और लोहा का रोड है टेबुल है उस पे बड़ा सा परात रखा हुआ है।

इसपे आसमानी व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ सामने एक केवाड़ी है।

बहुत सारे टेबुल कुर्सी पर सब लइकन बैठा हुआ है एक मास्टर खड़ा है सामने पानी की बोटल है।